फूल लगे हुए हैं ईट गिरे हुए हैं।

पूल बनवाए हैं काफी सारे लोग--

पेट्रोल पंप बना हुआ है।

यहां पर पार्क बना हुआ हैं।

जड़ी बूटियां घास लगा हुआ है।

बेल्ट लगे हुए है कही सारी गाड़ियां खड़ी हुई है।

रोज फेस्टिवल की तैयारी की गई हैं।

बिजली की तारे लगी हैं पेड़ लगा है।

यहां पे लोग बैठे हुए हैं बच्चे खेल रहे हैं।

लोग यहां पे बैठे हुए हैं कुछ खड़े हु है कुर्सियां लगी हुई है।

लोग खड़े हुए हैं। लिफाफ़ा लिए हुए है।

पेड़ लगे हुए हैं हरा भरा घास लगा हुआ है।

लोग यहां पर बैठे हैं कुछ घूम रहे है।

फूल पौधे लगे हुए हैं।

रंग बिरंगा टेंट लगा हुआ है।

बच्चे प्रस्तुति कर रहे हैं स्टेज पर--

टीने रखी हुई है यहां पर पेड़ लगी हुई है।